यहां पर एक बहुत बड़ा चीड़ का पेड़ भी दिखाई दे रहा है साथ ही मे दूर एक जंगल भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर दुकानों के ऊपर कुछ बोर्ड लगे हुए हैं।

इस दृश्य में बहुत से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

लाल इमारत में एक दरवाजा लगा हुआ हैं लाल इमारत के ऊपर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें रेलवे बोर्ड बिल्डिंग --

तथा आस पास बहुत सी चट्टानें भी दिखाई दे रही हैं।

यह एक पहाड़ी क्षेत्र का चित्र है इस चित्र में बहुत सी दुकान दिखाई दे रही हैं।

काले अंगूरों में कॅन्सर रोधी गुण भीं पाया जाता हैं।

यह लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं।

तथा एक व्यक्ति मोबाइल में इन सब की तस्वीरे खींच रहा है।

यह चित्र एक पहाड़ी छेत्र का है यहां पर बहुत से पहाड़ और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में बहुत से घर दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बहुत ही सुंदर चित्र है।

इसी के साथ यहां पर बहुत से घर भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बड़े की दुकान है इस दुकान का नाम मानस फर्नीचर है।

जो की बहुत ही सुंदर जगह लग रही है।